देख रहे हैं सामने एक आदमी खड़ा हुआ है ये फ्लावर्स की शॉप है यहा पे कुछ फ्लावर्स रखे हुए हैं।

बड़ा सा और उसके लेफ्ट साइड में एक ए.टी.एम. बना है जोकी आधा शटर गिरा हुआ है और इसके ऊपर एस.बी.आई. मैन गेट पे लिखा हुआ है।